और मजदूर लोग भी येलो शर्ट पहना पीली शर्ट पहना सफेद टी शर्ट पहना उसके पीछे को बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं।

पिक में देखोगे कि बहोत सारे लोग एक गांव में है सामने देखोगे की बहोत सारे लोग--

पीछे तार दिख रहा है सामने देखो की एक बाइक खड़ी हुई हैं।

पिक में देखने मिलेगा कि एक माल गोदाम है माल गोदाम के बाजु में देखो कि बहुत सारे वाइट कलर के--

कपड़ा नीचे गिर रहा है बस गाड़ी देखो की गाड़ी एक बाइक खड़ी हुई है और फाइट कलर की कार है।

टेक में देखनों को मिलता है कि एक मार्केट है मार्केट के नीचे देखो की बहोत सारे सब्जी खरीदने वाले लोग हैं।

दुकान लगाए हुए हैं बाजू में देखो कि बहुत से पेड़ लगे हैं पेड़ के देखो कि हरे कलर के पेड़ उनके बाजू में देखो कि दो तीन स्टोर लगे हुए--

बाजू में देखो कि बिल्डिंग उसके सामने तो कोई पेड़ लगा हुआ है मैदान देखो घास लगा हुआ है बाजू में देखो के--

समान वाली टंकी लगे हैं हरे कलर कि डब्बे रखे हैं जिस डब्बे हैं माल हैं सीमेंट रखी हुई ऊपर देखो कि आसमान खुला हुआ है बरी बरी मशीनें हैं।

रखा है उसके पीछे देखो की दो तीन बेंच लगी हुई है ऊपर देखो कि पंखा लगा है बाजू में एक घरी लगी हुई है और एक--

पिक में देखने मिलेंगे बदकपुर का स्टेशन है बाजू में देखो स्टेशन के नीचे दो लड़के अंदर जा रहे हैं ब्लैक कलर की सट नीले कलर की सट --

फोटो में देखने को मिलेगा कि पार्किंग है पार्किंग में बहुत सारी बाइक खड़ी हुई हैं बाजू में देखो कि एक खड़ी है कार उसके बाजू में देखो कि ऊपर एक--

फोटो में देखने मिलेगा कि सामने देखो की ये--

मशीने रखी कूलर रखा एक बाइक रखी हुई बाइक के बाजू में बहोत सारे टायर रखे हुए टायर के बाजू में देखो के--

लाइट का सामान रखा बाजू में देखो कि एक स्टूल रखा हुआ है साइकिल रखी बाइक रखी कार रखी है सामने देखो की मेरप्लेंनिक रखी पूरा मार्केट है।

पिक में देखने मिलेगा की सैंटा क्लाज़ की यूनिफॉर्म पहनें दो तीन लोग खड़े हुए हैं कोट पहने हुए है बाजू में देखे उनकी--

हमें देखने में मिलेगा कि एक रेलवे स्टेशन है रेलवे स्टेशन के बाजू में देखोगे एक पटरी व पटरी के बाजू में एक घर है घर के सामने एक एक टंकी लगी है टंकी से लेके खंबे तक बहोत से--

एक स्टोर है स्टोर में देखोगे की बहोत सारी मूर्तियां रखी हैं बाजू में बहोत सारे--

नीली टंकी है गी उसके सामने देखो एक पीले कलर का डब्बा रखा हुआ है हरे कलर सफेद कलर नीले कलर का उसके बाजू मे देखो एक बहोत बड़ा पेड़--

ब्लैक कलर का पैंट और वाइट कलर का शूज पहनी उसके पीछे देखो कि--

पीक में देखने मिलेगा एक झील है झील के बाजू में एक बोर्ड लगी हुई है बोर्ड से ता--

डाल के रखा बैग नीचे गिरा दिया ग्लव्स पहेनि उसके बाजू में देखो की--

व्हाइट कलर का पोता हुआ है सीलिंग है कांटेक्ट में लिखा नंबर लिखा--

पिक में देखने मिलेगा कि एक गार्डन है गार्डन में देखोगी एक फूल का एक गमला लगा हुआ है सामने देखोगी की एक पेड़ लगा हुआ पेड़ के बाजू में एक ओर पेड़ लगा हुआ--